ये भी सड़क के किनारे कुछ ऐसी बिल्डिंग सी लग रही है जिसमें क्लब हाउस लिखा हुआ है।

और आसमान भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ आसमान--

और ये काफी अच्छा इसमें सजाया भी है।

ये एक मुझे समुद्र का किनारा नजर आ रहा है शायद यहाँ पे जो दो बोट भी खड़ी हुई है।

मुझे बिल्कुल ये एक समुद्र का ही किनारा नजर आ रहा है और एक लाल रंग की और एक पीले रंग की बोट भी यहां पे खड़ी हुई है।

के रिसेप्शन का फोटो दिखाई दे रहा मुझे जिसमें कुछ सामने का भी दिखाई दे रहा है जिसमें दो चेयर्स लगी हुई है।

कुछ मुझे सैनिटाइजर भी नजर आ रहे हैं।

तो कुछ सामने पिक्चर भी दीवार पे लगे हुए हैं।

छोटी सी दुकान है लेकिन यहाँ पे काफी कुछ ऐसे कलरफुल चीजें मुझे नजर आ रही है।

ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है।

रेलवे प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

लाल चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है।